यहां एक सड़क है। सड़क के पास आसपास ग्रिल है। बड़े बड़े पेड़ हैं यहां पे कुछ--

एक दो स्कूटी भी दिखाई दे रही है हीरो हौंडापल्सर दिखाई दे रहे हैं यहां--

ये एक हेयर ड्रेसर है। इसका नाम है--

यहां एक सड़क दिखाई दे रही है यहां बहुत सारी मिट्टी है पत्थर है पेड़-पौधे हैं।

और पानी के बॉटल्स है दिखाई दे रहे हैं।

और यहां काले रंग के बड़े-बड़े टायर्स है और यहां आसपास छोटे पत्थर हैं।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

ये एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं और यहां वो लोग यूनिफॉर्म पहने हैं।